यहाँ पर एक पत्थर दिखाई दे रहा है दिखाई दे रही है आस -पास पेड़ लगे दिखाई दे रही हैं और पौधे --

पास मैं एक रेलिंग बनी दिख रही है जो गोल पाईपों से बनी दिखाई दे रही है उसके अंदर कुछ छोटे और कुछ मोटे पाईप दिखाई दी रही हैं रेलिंग लोहे की दिखाई दे रही है और नीचे कुछ झाड़ी इलाका दिखाई दी रहा है।

यह जो फोटो दिख रहा है जिसके चारों और गोल आकृति में गोल गुम्बद दिख रहा है ये बीच में बड़ा सा लाल घर में गुम्बद दिख रहा है जिसके साइड साइड में मूर्तिया बनी हुई दिख रही हैं छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे--

ये एक मंदिर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके सामने बनी दिख रही है सामने शंकर भगवान् की बहुत बड़ी मूर्ति बनी दिख रही है उनके हाथ में त्रिशूल दिखाई दे रहा है निचे के हिस्से में कुछ गेट दिखाई दे रहा है गेट के --

यह किसी जीम का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें सामने ट्रेड मिल और कुछ साइकिल दिखाई दे रही हैऔर कुछ कांच लगी हुई दिख रही है कांच मे से कुछ बाहर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है जिस --